और कुछ बच्चे खड़े होकर खेल रहे हैं।

मैदान के पीछे साइड पेड़ पौधे हैं।

मंदिर में शुक्र ग्रह बृहस्पति इंद्र ग्रह मंगल ग्रह बुध ग्रह लिखा हुआ है।

सब लोग मिलकर झंडा फहराने का प्रोग्राम बना रहे हैं।

एक बास भी है इसमें एक छोटा सा घर भी दिखाई दे रहे--

यह एक छोटा सा दुकान का फोटो है जहां पर बहुत सारे कार्टून में सामान रखे हुए हैं।

आकिर्ति में एक घर का चित्र है घर के पीछे टेंट बना हुआ है।

और घर के छत पर सोलर भी लगे हुए हैं।

हॉस्पिटल में एक बड़ा सा खिड़की है जिसमें शीशा लगा हुआ है जो नीले कलर के दिख रहे है।

गेट भी दिख रहे हैं और एक साइकल भी दिखाई दे रहे हैं।

और मोबाइल दुकान के बाहर दो बाइक और एक साइकिल नजरिया रहे हैं।

बिल्डिंग के दीवार में घास का डिजाइन भी किए गए हैं बिल्डिंग के सामने एक बाइक भी खड़े दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बड़ा सा हॉल है का चित्र है जहां पर कुर्सी लगे हुए हैं।

उस पर एक दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और एक साइकल भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक होटल का चित्र है जिसमें लिखा हुआ है होटल मोनोकामना ।

फर्स्ट ब्रेंच पे एक बोतल नजर आ रहे हैं जो पीला कलर के दिखाई दे रही है।

डाकघर के पीछे एक पेड़ भी नजर आ रहे हैं और आगे भी एक पेड़ लगाए हुए हैं जिसको घेर दिया गया है।

बड़ा चट्टान के पीछे दो पेड़ नजर आ रहे हैं।